स्टेट बैंक ए_टी_एम है लोग लाइन मे लगे हुए है एक बाइक खड़ी है।

ये नगर पुलिस अध्य्क्ष कार्यालय है।

यहाँ पे एक स्कूटी है बड़ा सा पेड़ है।

ये एक पूल है यहाँ लोहे का रोड लगा हुआ है इसमें बोहोत सारे खम्भे है।

कार भी दिखाई दे रहा है टेम्पू है बाइक है।

यहाँ पे फल वाले भी खड़े हुए है जो बेच रहे है पीछे बड़ा सा बोर्ड है।